पत्थर का रंग भी बहु --

अलग-अलग तरह का दिख रहा है। नीचे में बहोत सारे लोग भी दिख रहें हैं।

उसके पीछे में बहुत सारे छोटे-छोटे फूल के पौधे हैं बहुत सारे फूल भी दिख रहे हैं सुन्दर-सुन्दर।

पीछे में एक घर भी दिख रहा है |

सामने एक सड़क दिख रहा है सड़क के किनारे बोहोत सारे पत्थर भी बैठाए गए हैं।

रूम में लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं |

एक लकड़ी का टेबल भी दिख रहा है |

बहुत सारे हरे-हरे घास दिख रहे हैं |